ये एक रात का है जहा पे सामने की तरफ मून दिख रहा है और स्ट्रेट लाइट्स लगी हुई है।

ढेर सारे खिलाड़ी मेदान मे--

और यहां पर स्विच बोर्डस् लगे हुए हैं और एक ब्लू कलर का दरवाजा है और साइड में तीन रेड कलर की चेयर्स पड़ी हुई हैं।

और यहां पर छाते की तरह भी ये लाइट्स की डिजाइन बनी हुई है इनमे लाइट् जल रही है कुछ लोग यहां पर खड़े हुए है।

यहां पर कंस्ट्र- न- श- शन का वर्क हो रहा है।

और नीचे की तरफ प्लास्टिक की बास्केट है और उसपे ये आलुओ का अडम लगा हुआ है।

नदी का साइड बहुत ही गंदा है दूसरी तरफ बड़े-बड़े से पेड़ लगे --

रखे हुए हैं साइड में डस्टबिन है और बेड पर चादर बिछी हुई है।